यहाँ एक बहुत सुंदर सा गार्डन बना हुआ है जिसमें बहुत सारे जीने दि-दिए हुए है इसके ही पास एक तालाब नजर आ रहा है।

यहाँ जिले भी बहुत सारे हैंऔर इधर का गेट बहुत बैलून से डेकोरेट और ये ब्लू और व्हाइट यहाँ कुछ लोग खड़े होके बात भी कर रहे --

ये एक पार्क है जहां बहुत सारे बड़े-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए है यहाँ पे कुछ जीने भी है और यहां एक बेंच लगी है जिनमे तीन जिसपे तीन लोग बैठे हुए नज़र आ रहे है।

ये एक गेट है बड़ा सारा जो पर्पल कलर का है जिसकी दीवारे पर्पल और व्हाइट है यहाँ एक ग्रे कलर की कार भी खड़ी हुई है।

ये एक कार्स का श अम्म्म शेड दिख रहा है जहाँ बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं यहाँ अलग-अलग तरह की कार खड़ी है यहाँ --

ये एक इंटरनेट की शॉप है जहाँ ऑनलाइन वर्क होता है यहाँ बहुत सारी सर्विसेस हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ एक बाइक भी खड़ी हुई है।

ये एक दुकान है उसपे लिखा है कृपया एक महीने के अंदर कपड़े ले जाए अपने बहुमूल्य सामान --

ये एक रूम है जहां पर एक एल.इ.डी. लगी हुई है और बहुत सारे परदे लगे हुए हैं यहां पर वाइट कर की बेडशीट बिछी है बेड पर यहां एक छोटा-सा डस्टबिन भी रखा हुआ है।

ये एक स्टेट बैंक ए.टी.एम. है ए.टी.एम. के बाहर एक अंकल खड़े है जो वाइट कलर की हुडी और ब्लैक लोअर पेहेन कर खड़े है जिन्हे ए.टी.एम. के अंदर जाना है।